यहां मैं एक घर बनता देख पा रही हूं यहां पे बहुत ज्यादा गिट्टी और बालू के ढेर रखे गए हैं।

पीछे की तरफ एक बड़ा सा खेत का मैदान दिखाई दे रहा है और अगल बगल बहुत ज्यादा पेड़ पौधे उगे हुए हैं।

यहां पे मैं एक मकान देख पा रही हूं जिसमें बहोत सारी दुकाने बनाए गई हैं।